हरे घने - घने पेड़ दिखाई दे रहे हैं सामने सफेद काला आकाश दिखाई दे रहा है।

सामने एक ऊंचा- सा पहाड़ दिखाई दे रहा हे आकाश दिखाई दे रहा हे ।

उसके सामने एक बगीचा दिख रहा हैं जिसमे बड़ी सुंदर हरी घाँस और एक लंबा स पेड़ दिखाई दे रहा हैं।

पास में कटिंग करे हुए हरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं ऊंचे-ऊंचे लम्बे पेड़ भी लगे दिखाई दे रहे है आकाश दिखाई दे रहा है।